सामने पानी की दो टंकी है एक नारियल के पेड़ है नीचे में पाइप्स लगे हुए है और कुछ टीन लगे हुए है।